ये एक रेस्टोरेंट है और यहां पर बहोत सारी कुर्सी और टेबल लगे हुए है यहां पर तीन आदमी बैठे हुए हैं एक आदमी है जो उसमें--

ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है यहां पे एक डस्टबिन भी रखा गया है और--

ये एक की किताब की दुकान है और यहां पे दो इंसान बैठे हुए जिसने एक ने--

लाल रंग का चेयर है और यहाँ पे बहोत सारी ज्वेलरीज हैं।

यहां पे बहोत सारी लाइट्स भी लगी हुई है और रंग बिरंगे कुछ--

ने एक इंसान में पीले रंग की शर्ट पहनी हुई है और एक ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है।

ब्लैक रंग की शर्ट पहनी हुई है और यहाँ पे कुर्सी जो हरे रंग की है।

यह एक बजाज कंपनी का शॉप है।

और यहाँ से टेबल कुर्सी भी बहुत सारे लगे हुए है।

यह एक लाल रंग का घर है और यहाँ पे बहुत सारे बाइक्स लगे हुए हैं यहाँ पे स्कूटी भी लगी हुई है।

लगी हुई है और यहां पे दो तीन इंसान बैठे हुए हैं।

इस जिम का नाम है आयरन जिम लिखा हुआ आ--

आए घर के बालकनी में एक औरत--

यहाँ पे ब्लू कलर का वीवो लिखा है और कुछ डब्बे है जो कुछ लाल कलर के हैं और कुछ सफेद रंग--

यह एक जगह है यहाँ पे एक चेयर है लंबी सी बैठने के लिए--

और यहां पे जो टेबल है उस पर शीशे भी लगे हुए हैं।

ये एक होटल है जिसका नाम होटल हवेली है।